यहाँ पे नीचे की ओर एक नदी है उस नदी में एक महिला नीचे बैठी हुई है उसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

और सामने की ओर एक बड़ा सा झरना है और बहोत सारा पहाड़ भी है उसके ऊपर बहोत सारे हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं।